कुछ लोग यहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर पीला लाल सफेद और नीले गुब्बारे लगे हुए दिख रहे है।

और प्रतिमा गोल्डन रंग की--

यहां हम देख सकते हैं कि--

यहां हम देख सकते है कि एक लड़की के ऊपर प्लेट मे तीन चार पराठे रखे--

यहां हम देख सकते हैं कि दो तीन किश्तियां पानी में दिख रही है और यह तालाब बहोत बड़ा है।

और यह चाइनीस भी है यहां लिखा हुआ है आंटीज़ चाइनीस फूड महक चाइनीस फूड ।

यहां पर हमे ऐक्सिस बैंक का--

और गाड़ियां भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

हमें एक बिल्डिंग दिख रही है। बिल्डिंग में ऊपर जाने के लिए लोहे की--हुई

यहां पर हमें एक गार्डन दिख रहा है जिसमें बहोत सारा घास--

और ट्रेन की पटरी नजर आ रही है।

कैफे दिख रहा है जहां के_एफ_सी लिखा हुआ है यहां पर ब्राउन और लाल रंग के--

और पीले रंग की फ्रॉक पहनी है।

जिम दिख रही है जहां पर जिम करने की मशीनें रखी हुए हैं जो पीले और काले रंग की हैं।